यह एक महल है जिसमें खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और चारों तरफ ओटो कार वगैरह खड़ी हुई है।

यह एक दांतों का अस्पताल है जिसमें--

यह एक पंचर की शॉप है और पंचर एक आदमी निकाल रहा है और एक आदमी बैठा हुआ है वह दुकान को खोल रखा है।

इसमें कुछ लड़कियां हैं अं जो डांस कर रही है पीछे सांप का चित्र लगा हुआ है।

यह एक गार्डन है गार्डन में हम सभी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं और कुछ खेलने के बच्चों के खिलौने भी हैं।

ये एक बताशी का ठेला है अ ऊपर कुछ बिल्डिंग में कपड़े सुख रहे हैं पोस्ट ऑफिस बैंक भी है बताशी खाने के लिए लोग आ रहे हैं।

यह एक लड़की है जो मिरर में अपनी फोटो खींच रही है इसने ब्लैक कलर की जींस पहनी हुई है और पलपल कलर का टॉप पहना हुआ है।

यह एक मेला लगा हुआ है जिसमें सभी औरते डांस कर रही है और व्यक्ति उनको देख रहे है गार्डन का यह व्यू है।

यह एक चाय की शॉप है जिसका तड़का नाम है एक व्यक्ति चाय के लिए खड़ा है और एक व्यक्ति की परछाई आ रही है बाहर।

यह एक स्विमिंग पूल है जिसमें एक मूर्ति है चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है और स्विमिंग पूल में पानी भरा है।